साम के टाइम का वख्त ।

ये फोटो किसी ज़ू का लग रहा हैं शायद से।

कुछ बच्चे खेल रहें हैं अ पीछे घर भी बहुत सारे है ये पिंक कलर के घर के पास से फोटो लिया गया है आसमान कभी भी मस्त हो रखा है।

पीछे घर है। घास है। एक सूरज है।

साइड में स्लाइड करने का भी बना हुआ है।

एक रेड कलर की स्विफ्ट खड़ी हुई है। एक स्प्लेंडर खड़ी है।

इस फोटो में एक घर है कुछ लोग बैठे हुए हैं सामने कुछ काम चल रहा है क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे।

इस फोटो ही रेस्टोरेंट का फोटो है। जहां पर लाइट वाइट लगी हुई है। टेबल लगी हुई है। कुर्सी फैन --

पीछे एक महिंद्रा का शोरूम है। पोस्टर लगा हुआ है। गेट है टंकी है महिंद्रा ट्रेक्टर का शोरूम है शायद और पीछे घर भी है।

ये किसी गार्डन का फोटो है जहाँ पेड़ पौधे घास घूस हैं। पीछे घर है। एक साइकिल है। सामने पेड़ है।

घास अगल-बगल पेड़ -पौधे हैं --